जहां पर बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे छड़ भी दिख रहे हैं।

और सभी बिल्डिंगों पर टंकी भी बैठाए गये हैं।

तथा यहां पे एक बड़ा सा खंभा भी दिख रहा है और उसमें तार भी है।

कुर्सियों को लोहे की मदद से बनाया गया है।

जो कि ब्लू कलर का है।

यह एक कार का दृश्य है।

और एक व्यक्ति के चेहरे पर ब्लर किया गया है।

तथा यहां पे एक बड़ा सा पत्थर भी दिख रहा है ।

यह एक रोड का दृश्य है ।

तथा यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े भी दिख रहे हैं।

तथा एक बड़ा सा बहुत बड़ा साड़ी दिख रहा है।

तथा मशीनों का कलर ब्लैक और पीला है।

उसमें के_सी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल लिखा गया है।

यह एक रोड का दृश्य है।

बेड को लकड़ी की मदद से बनाया गया है।

जोकि पर्पल और वाइट कलर का है।

और कुर्ता पजामा भी पहना गया है।

तथा यहां पे टाइल्स का प्रयोग किया गया है।

यह एक मस्जिद का बाहर का दृश्य है।

जहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लिखा हुआ है।

इसमें मदीना मस्जिद लिखा गया है।

तथा खिड़कियों का डिजाइन लोहे की मदद से बनाया गया है।

जिसका रंग रेड और क्रीम कलर का है।

यह एक सैलून का अंदर का दृश्य है।

और उसका रंग ब्लैक कलर का है।

तथा उसके ऊपर बहुत सारे सामान रखे गए हैं जैसे कि साबुन शैंपू हार्पिक एवं खाने पीने का सामान और चेहरे पर लगाने वाला भी सामान।

तथा यहां पे टाइल्स का भी प्रयोग किया गया है।

जो कि व्हाइट और ब्लैक कलर का है।

तथा यहां बहुत सारे लाईट भी दिख रहे हैं और पंखे भी दिख रहे हैं।

यहां पे दो और लड़कियां क्रिकेट खेल रही है।

एवं यहां पे भगवान का मूर्ति भी दिख रहा है।